यह बगीचा में एक बच्ची पानी दे रही है।

यह एक स्विमिंग पूल है।

जिनमें बहोत सारे रेड लगे हुए हैं।

जैसे टेम्पू ट्रक स्कार्पियो फौर्चुनर और भी बहुत प्रकार के गाड़ी पार होते है इस रोड में इस रोड में --

यह एक अजंता डेरी है।

जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते है अपने खता खुलवाने के लिए ।

और शरीर स्वस्थ रहता है।